हेलो दोस्तों प्यारे दोस्तों यहां पर एक बोर्ड लगा है उसके ऊपर नाम लिखा गया है।

इसमें यह एक बुक्स की दुकान है और बहोत सारे--

हेलो दोस्तों प्यारे दोस्तों यहां पर एक हमें मछली दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ --

रेगिस्तान जैसा कुछ दिखाई दे रहा है उसकी तो पीछे की तरफ भी--

एक मनुष्य बाहर भी है और बहुत अंदर अंदर बहुत अच्छे अच्छे लाइट जच रही है।

आर_जे जीरो सात जीरो एक इक्कावन इक्कावन और बहुत सारी यहां पर चाबी भी लटकी गई है चाबी के छल्ले भी लटकाए गए हैं।

एक तिरपाल है तिरपाल भी दे रहा है मंदिर के ऊपर आ रहा है जैसा वो तीन दो कुर्सी भी पड़ी हुई है और दो तीन मनुष्य भी चल रहे हैं मंदिर में।

स्कूल के अंदर बहुत सारी टेबल भी रखी हुई है और टेबल के ऊपर कुछ सामान भी रखा गया है।

और बहुत अच्छा वातावरण है पीछे की तरफ एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है पीछे का गेट खुला भी है और एक कूलर भी पड़ा हुआ है और --

किचन दिखाई दे रहा है वह तीन चार एक थाली में चक्कू भी दिखाई दे रहे हैं और--

हेलो दोस्तों प्यारे दोस्तों एक बहुत खूबसूरत घर है और इसके ऊपर कांच जैसी अलमारी भी लगाई गई है ओ --